देखिए जैसे कि इसमे बच्चे लोगों का उतरने और चढ़ने का है इससे अच्छे लगते हैं खेलने में मनोरंजन का चीज है और साइड साइड में छोटे-छोटे पौधे पेड़ लगे हुए हैं हरे-भरे है।

जिससे की इससे बाल भी छोटा हो जाता है साइड साइड में आर्मी कटिंग हो जाते हैं।